पीछे डाले डब्बे इसके नीले रंग के--

सब बच्चे योगा मैट पे योगासन कर रहे हैं।

इस फोटो में काफी सारे वाशबेसिन दिखाई दे रहे हैं पोस्टर दिखाई दे रहा है लड़की का।

पीछे कुछ बैठने की जगह दिखाई दे रही है।

एक खिड़की दिखाई दे रही है जो चॉकलेट कलर की है।

और बाहर कुछ लड़के खड़े हैं कुछ यू_पी की गाड़ियां खड़ी हैं।

ऊपर की दीवार है वो काले रंग की दिखाई दे रही है।

सामने सीढ़ी दिखाई दे रही है।

सामने एक गाड़ी खड़ी हैजिस पे लिखा है मिनी वाटर टेंडर एक आदमी बैठा हुआ है उस गाड़ी में बाहर पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

फोटो में एक गाड़ी है जिस पे लिखा है चौक सराय रोड गया हिंदुस्तान।

और कुछ दूसरी भाषा में भी लिखा हुआ है एक होटल भी दिखाई दे रहा--

इस फोटो में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं।

नकली फूलों से डेकोरेशन हुई है।

बाकी औरतों ने साड़ियां पहनी हुई है।

नकली फ्लावर की डेकोरेशन है साफ सड़क है।

दो बाईकें बाहर खड़ी हुई हैं साइड में लिखा है ए_सी रूम ए_सी रेस्टोरेंट ए_सी बैंकेट हॉल ।

ट्रैपलर भी दिखाई दे रहा है सामने तोलिया दिखाई दे रहा है एक कैलेंडर भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर सफेद है बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है पंखा भी लगा हुआ है।